इस फोटो में पेट्रोल पंप है रोड है गाड़ी है।

अभी बी र इ डब्लू लिखा हुआ है आदमी है।

काला कलर का शर्ट है नीला कलर का शर्ट है धोती है फूल है माला है।

फोटो में घर है बहोत सारी गारी है स्कूल बस है।

प्लेट है कटोरा है चम्मच है छत है।

गाडी है कुर्सी है टेबल है।

घर है गेट है लाइट है बॉल है।

पीछे में मूर्ति है पंखा है बॉल है लाइट है।

पर्दा है पंडित है धोती है कंजी है गमछा है सारी है।

इस फोटो में घर है गेट है गद्दा है पंखा है बॉल है लाइट है फूल है माला है।

टीवी है सिल्मार हॉल है सिनेमा हॉल लाइट है ।

इस फोटो में आदमी है डिब्बा है बॉल है मछली है मछली काटने वाला हथियार है आदमी है डिब्बा है हरा कलर का बाक्स है।

आदमी है शर्ट है पेंट है लाल कलर का शर्ट है लाल कलर का कुड्सी है टेबल है ।

फ़ोटो में पेड़ हें पत्ता हें पंका हें बोल हें पानी हें झरना हें घास हें जंगल हें पका हें।

पंखा है बॉल है लाइट है पेड़ है पत्ता है।

आदमी है चद्दर है चद्दर ओड़ के आदमी कुर्सी पे सोया हुआ है।

फोटो में कॉपी है किताब है बॉल है लाइट है पंखा है वोध है ।

किताब है लाल कलर का किताब है ब्लू कलर का किताब है पिला कलर का किताब है नीला कलर का किताब है सब कलर का किताब --

इस फोटो में गेट है घर है।

परछाई है रोबदा है बोर्ड है।

कुर्सी हें टेबुल हें भंडारा के लिए कुछ न कुछ बोनल हें एह में भोजो का बियाह हैं।